बिल्डिंग दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं घास फूस दिख रहे हैं आता दिख रहा है।

ताला दिख रहा है बाइक दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है दिख रहे है।

मुसे भी दिख रहे है ज़मीन भी दिख रहा है सिदियाँ भी दिखाई दे रही--